इसके बाहर दो बच्चे खड़े हुए हैं।

इसके अंदर दो तीन मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

इसके अंदर बहुत सी आदमी खड़े हुए हैं और बहुत सी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।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

और बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसमें अलग अलग प्रकार के पोल बने हुए हैं।

और एक ट्रक भी रखा हुआ है।

और दो तीन आदमी भी खड़े हुए हैं।

और बहोत सी लाइटें भी लगी हुई हैं।

दुकान पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।